ये एक पार्क क्या का चित्र है इस पार्क में --

झूला भी है जो नीले --

कि जमीन कच्ची दिख रही है।

और बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस जमीन पे घास भी दिख रही --